यह एक रूम है रूम के बाहर में बैंक ऑफ़ बड़ौदा का पोस्टर लगा है लकड़ी का गेट है और--

पेंट लगे है और बीच में खाली ग्राउंड है एक पोल है।

ये एक गार्डन जैसे बीच मे कुछ पानी वानी का लगे गेट है।

और ये गार्डन है। पीछे में बहुत सारे पेड़ है। बिल्डिंग है और--

नीचे लकड़ी लकड़ी वाली टाइल्स लगी हैं दीवाल लाल कलर की और व्हाइट कलर के--

और ये एक अक बंकर जैसे इसका शेप --

सड़क पे भी बहोत सारे लोग हैं एक ये बैरीगेट के पास बैठे हुए हैं दो उधर--

ये एक आइसक्रीम पार्लर है यहाँ सात डिफरेंट कलर के आइसक्रीम है पीछे में सॉस के बॉटल पड़े हुए है।

खाना है देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बिरयानी है और--

हॉस्पिटल का नाम सी श्री नारायना हॉस्पिटल है।

ये एक कार का शोरूम जैसा लग रहा है जिसमें तीन कार खड़ी है एक ब्लैक कलर की चेयर है।

और पीछे में एक लाल कलर की स्कूटी है जिसमें अभी पेट्रोल भराएगा।

और यहां एक तार लगी है साइड में एक पेड़ है और--

को एडिट मतलब इसके आसमान को एडिट किया हुआ है।

कपड़ा लगा हुआ है और टेबल के पीछे फादर खड़े हुए हैं दीवार--

आ साइड में ल बहोत लोग बैठे हुए हैं और एक--

और इधर दीवार पे एक पोस्टर लगाया आइसक्रीम का जिस पे त अ तीन कलर अ तीन कलर वाली आइसक्रीम लगी है।